के लाइन से बहुत दूर-दूर बिल्डिंगे बनी हुई हैं नीचे एक एक रोड दिया है। उसमें लगी हुई है पेड़ लगे हुए है छोटे छोटे से नीचे जमीन है।

और ऊपर की तरफ पुरे में वो बना हुआ है एक लोहे का डेंट है साइड में दरवाजा है एक जी में दिए हुए हैं नीचे की तरफ बर्तन रखे हुए हैं एक आदमी का पैर दिख रहा है जुती पहना --

सारे लोग बैठे हुए है कोई खेल रहा है खड़े हुए है पीछे टा एक खंबा है खंबे पर लाइट लगी हुई है।

हैं पेड़ लगे हैं बहुत सारे लोग है साइड में पटरियाँ हैं नीचे गिट्टिये बिछी हुई हैं लकड़ी लगी हुई है हैं आस-पास बहुत सारे इंजन ख --

और वाइट साइड में कॉपर कलर की शेरवानी है| उसमे एक रु ब्लैक कलर का रुमाल डला हुआ है साइड में भी एक रुमाल डला है एक साइड में भी ऐसी जैकेट टंगी हुई है एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे उसपे कुछ लिखा हुआ है।